यह फोटो मुझे शाम के व्यक्त का दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो मे एक आर्मी का टें खड़ा दिखाई दे रहा है मुझे उस टेंक के पास कुछ बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिसमे एक तिरंगा दिखाई दे रहा है।

दीवार दिखाई दे रही है जिसके उपर इंग्लिश मे येल्लो कलर मे लिखा हुआ है मुझे इसके अंदर कुछ टफ सरीखा कुछ लिखाई दे रहा है। इके अंदर मुझे आर्मी का कुछ दिखाई दे--

फोटो मुजे दिन के वक्त का दिखाई दे रहा है। मुझे इसमे रोशनी नजर आ रही है सूरज की इसमे मुझे हॉल दिखाई दे रहा हैं बड़ासा जिसमे अंधेर हो रहा है।

यह फ़ोटो मुझे दिन के समय का दिख रहा है इस फ़ोटो मे मझे कुछ म्यूज़ीअम मे कुछ रखाअ हुआ दिखाई दे रहा है जोकि एक जहाज है पानी का मझे वो जहाज रेड और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है उसपे तिरंगा दिखाई दे रहा है।

मुझे पेड़ दिखाई दे रही है और गमले दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं मुझे--

मुझे इस फोटो में कुछ घर नजर आ रहे है जो की कमरे दिखाई दे रहे है बिल्डिंग के अंदर और कुछ खिड़किया दिखाई दे रही है मुझे ये बिल्डिंग येलो कलर की दिख रही है मुझे इसमें एक वायर दिखाई दे रहा है और आसमान नजर आ रहा है नीले रंग का --

ये फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे झरना बेहता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत तेज पानी बेहता हुआ दिख रहा है।

आज मुझे इस फोटो में धूप नजर आ रही है मुझे इसमें ग्रास नजर आ रही है हरे रंग कि मुझे इसमें बहुत सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं मुझे इसके अंदर एक लेडी बैठी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इसमें टँक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। मुझे इसमें कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।